यह कछव जाते हुए दिखाई दे रहा है जोकि जमीन पर हरियाली भी दिखाई दे रही है।

यह बिल्डिंग बहोत ही सुंदर दिख रही है जिसमे कांच के शीशे लगे हुऐ दिखाई दे रहे हैं।

और एक व्यक्ति थोड़ा सा दिखाई दे रहा है बैठे हुए और कई कुर्सी हैं। एक कुर्सी सामने दिखाई दे रही --

यह कोई ओवर-ब्रिज जैसा लग रहा है जिससे उसके बिच में रास्ता निकला हुआ दिखाई दे रहा है।

में एक तालाब जैसा बना हुआ दिख दे रहा है इसमें कई व्यक्ति नहाते हुऐ नजर आ रहे हैं।